ये डलियाँ कुछ इधर पर एक गड्ढा-सा दिखाई दे रहा है इसको --

एक उसके पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है वाइट टी-शर्ट में।

जिसमें अंबेडकर जी की तस्वीर है।

ये कोई स्कूल या कॉलेज या कॉलोनी की बिल्डिंग्स हैं इनके आस-पास पेड़ भी लगे हैं।

एक गिट्टी का ढेर लगा है उसके पास एक खजूर का पेड़ है छोटी-छोटी लाइट्स वाले खम्भे लगे है।

इस इमेज में एक ऑटो दिखाया गया है इस ऑटो में ऊपर की तरफ तीन लाइट्स लगी हैं एक लाइट्स बीच में लगी है।

एक सी.सी.टी.वि. फुटेज लगा दिखाया गया है।